गेट के उस पार बहुत सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और कुछ सूखे पेड़-पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये एक खंडेलवाल सेवा सदन के बाहर की फोटो दिखाई दे रही है।

जोकि इस दीवार पर एड्रेस लिखा हुआ है।

ये कुछ स्टिक मे चिकन के पीस डालकर ऊपर लटका कर भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह किसी मैरिज हॉल के बाहर की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर बहुत सारी लाइटें लगी हुई नजर --

यह किसी रेस्टोरेंट के रूफटॉप की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे कुछ टेबले कुर्सियां लगी हुई नजर आ रही है।

सामने वाली बिल्डिंग पे मैगी रूफटॉप का एक बड़ा सा लाल कलर का बोर्ड भी लगा हुआ दिखाई--

ये किसी बड़ी सी बिल्डिंग की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर तीन चार बड़े बड़े ऑफिसों की बिल्डिंग बनी हुई है।

ये किसी मैदान की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे कुछ छोटे बच्चों के द्वारा फुटबॉल का मैच खेला जा रहा है।

यहां पर रंग बिरंगे फूल लगे हुए है और कुछ पर्दे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां तालाब के बीचो बीच में दो गाईया खड़ी होकर नहाती हुई नजर आ रही है।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

ये किसी नर्सरी की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर बहोत सारे पेड़ पौधे रखे हुए नजर आ रहे हैं।